इधर पे आ पेन रखा गया है और यहां पर बहुत सारे बुक भी हैं और यहाँ पर पेनें है और इधर को सब कुछ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक रेस्टोरेंट का पिक्चर है जहाँ पे काँचो की टेबल बनाया गया है। एक कंप्युटर दिखाई दे रहा है सामने तीन चेयर भी दिखाई दे रहा हैं।

बाएँ तरफ शीशे उसके उस पार रस्ता दिखाई दे रहा है और सामने मोदी का भी पिक्चर दिखाई दे रहा है। मोदी जी का।